और हम देख सकते है यहाँ पर कोई भी लोग नही दिख रहे हैं ।

वहा पे अ कुछ लोहे का बना हुआ हैं जो--

और हम देख सकते हैं यहां पे कुछ एनिमल्स भी घूम रहे है।

स्टेज के अंदर हम देख सकते हैं कुछ लोग भी यहां पे नाचते हुए दिख रहे--

लैपटॉप वगैराह और फोटो वगैराह यहाँ पे बेचा जाता हैं।

और अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो ये एक--

और उसमे हम सामने देख सकते हैं और--

तो हम देख सकते हैं यहां पे--